ये जामताड़ा पर्वत विहार है और इसके अंदर काफी घूमने की जगहें है और ये पार्क टाइप का हैं।

जो की हमारे जीवन के लिए काफी महत्पूर्ण हैं।

चिड़ियाघर में काफी सारे लोग आते है घूमने--

और हिरन एक शाकाहारी जानवर हैं।